सेब अ नासपती --

सामने एक बड़ा सा घर है।

बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक दो तीन खिरकी है।

और एना भी लगा हुआ है साइड से।

सामने बड़ा सा मार्केट है।

कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं।

बहुत फूलों से सजा हुआ है।

दो चेयर है एक सोफा है।

एक और साइड से टेबुल रखा हुआ है।

कुछ लोग लेट के कर रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है।

एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है।

कहीं-कहीं पानी जमा हुआ है।

बहुत सारे हरियाले पेड़ पौधे हैं।

दो साइड से झंडे लगे हुए हैं।

एक साइड से खड़ा है।

बहुत सारे पैर पौधे लगे हुए हैं।

पीला ऑरेंज कलर फूले रखे हुए हैं।

उसमें दो लोग मूर्ति बना रही है।

पीछे दीवार पे एक पेटिंग है।

एक मार्क्स लगाया हुआ है।

एक चेयर लगा हुआ है।

एक्सचेंज खरा है।

एक चेयर लगा हुआ है साइड से--

सामने दो लोग एक्सरसाइज कर रहे ।

सामने एक पेट्रोल पंप है।

कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं।

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं।

सामने एक पेट्रोल पंप है।

एक बाइक पे बैठा हुआ है।

इसमें बहुत सारे हिरण हैं।

हरियाली पेड़ पौधे साइड से लगे हुए हैं।

दो ट्रॉयलि बैग रखा हुआ है।

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा घर है।

कुछ गमले में भी रखे हुए हैं।

कुछ लोग कुछ खरीद रहे हैं।

एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारे लोग जा रहे हैं इधर से उधर--

उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

उस पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

एक फल के दुकान पे--

एक लाइट है एक दो --

सामने एक मेन सैलून है।

उसके साइड से एक लड़का खड़ा है।

एक ठेला रखा हुआ है।

एक साइड से छातालगा हुआ है।

बहुत सारे कुर्षियां रखा हुआ है।

कुछ लोग खड़े हैं बहुत सारे लाइट लगा हुआ है।

कुछ बैलून लगा हुआ है।

बहुत सारे कपड़ेटंगे हुए हैं।

स्कूटी एक दो बाइक लगा हुआ है।

बहुत सारे टेबुल --

कुछ कुर्सियां भी लगा हुआ है।

बहुत सारे ईंटे रखे हुए हैं।

उसमें बहुत सारे सामान रखे हैं।

शैंपू तेल क्रीम --